यहां पर एक शादी हाल दिखाई दे रहा है।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

काउंटर के अंदर मुझे रसगुल्ले म--मोतीचूर के लड्डू मावा बर्फी बर्फी गुलाब जामुन दिखाई दे रहे हैं।

ये इस पर लोहा बा लगा रहे व्यक्ति चार व्यक्ति लोहा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं दो व्यक्ति वेल्डिंग कर रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे कॉलेज की क्लास दिखाई दे रही है कॉलेज की क्लास के अंदर बेंच लगे हुए हैं।